ऊपर की छवि में एक सरक का दृश्य दिखाया गया है।

सड़क के बाएं तरफ एक सीमेंटेड ब्रिज दिखाया गया है।

इस तस्वीर में एक स्टेशनरी की दुकान दिखाई गई है।

यह तस्वीर एक शहरी क्षेत्र की हो सकती है क्योंकि यहां पर इमारत और वाहन की संख्या अधिक है।

यहां पर एक गिटार भी टंगा हुआ है।

यह तस्वीर एक बैंक की है।

इस जगह की काफी सुंदर सजावट की गई है रंग बिरंगे फूलों और पर्दों से।

दुकान के बाहर एक आदमी बैठा हुआ हैं।

यहां पर कई फल टोकरी में रखे हुए हैं और कुछ टंगे हुए हैं।

यहां पर एक गैस टॉप सिलेंडर और कुछ बर्तन रखे हुए हैं।

मैदान हरा भरा और अच्छी तरह से बना हुआ है।

पहाड़ के नीचे एक गेट दिया हुआ है जिसे अंदर बाहर किया जा सकता है या बिल्कुल गुफा जैसा प्रतीत होता है।

इस कमरे में दिवाल हल्के पीले रंग पे है।

नदी को पार करने के लिए एक लोहे का ब्रिज बना हुआ है।

ऊपर की तस्वीर में एक खेल का मैदान दिखाया गया है।

इस तस्वीर में चार खिलाड़ियों को दौड़ते हुए दिखाया गया है।

इमारत के आस पास पेर पौधे भी हैं।

ऊपर की छवि में एक सुनसान सड़क का दृश्य दिखाया गया है।

इस छवि में सड़क के दोनों तरफ सफेद और पीले रंग के दीवाल से कुछ पेड़ों को घेरा गया है।

दुकान का लेआउट व्यवस्थित और आकर्षक लगता है।

इस तस्वीर में सड़क को दर्शाया गया है।

ऊपर की छवि में मॉल या दुकान का दृश्य दिखाया गया है।

इस तस्वीर में दरवाजे पर एक नीले रंग का पर्दा लगा हुआ है।